हेयर क्रीम सब जेंस के सैलून के सामान रखे हुए हैं साइड में एक बोड भी लगा हुआ है और कुछ टेबल है और--

यहां पर अ बहोत सारे पिंज कलरफुल पिंजरे हैं अ--

ये एक बड़ा सा रेस्टोरेंट है रेस्टोरेंट में आज सजावट की गई हुई है।